इस फोटो में रंग बिरंगे पोस्टर दिखाई दे रहें। काले रंग सा एक सेवन डेस का पोस्टर नजर आ रहा है। ऊपर छत सफेद दिखाई दे रहा है।

पीले रंग की लगी हुई है जिस पर यू.पी. सिक्स फाइव जी.टी. जीरो सिक्स सेवन एट लिखा नजर आ रहा है पीछे मकान --

इस फोटो में माँ काली की एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके सामने पोस्टर लगा हुआ है उस पर पेड़ नदी दिख रहे हैं।

इस फोटो में कांच की अलमारी से बनी ए अलमारियां दिखाई दे रही हैं एक लाल और एक सफेद रंग की अलमारी है जिसमे सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ बकेट टब और --

प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं बड़ी पॉलीथीन टेबुल ए नजर आ रही है ऊपर छत सफ़ेद --

इस फोटो में एक बर्गर का स्टाल दिखाई दे रहा है जिस पर शाइन बर्गर कॉर्नर लिखा नजर आ रहा है। पीले कलर के पोस्टर पर ए खाने की डिश के नाम दिखाई दे रहे हैं।

कांच लगे हुए हैं और एक लाल शर्ट पहने लड़का बीचों-बीच खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है| कुछ नीले कलर के प्लास्टिक भी लटके हुए नजर आ रहै हैं।

ये कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं। एक सफ़ेद शर्ट पहने चश्मा लगाए आदमी पेपर पीले पेपर सफ़े --